और अ बैठने के लिए यह कुछ पत्थर जैसे कुछ दिखाई दे रहा है धन्यवाद।

चित्र में कुछ हॉल जैसा दिखाई दे रहा है।

मे नीला आसमान दिखाई दे रहा है पहाड़ी दिखाई दे रही है और काफी सारे ए पेड़ ऊँचे ऊँचे दिखाई दे रहे है और निचे जमीन अ प्रभाग दिखाई दे रहा है धन्यवाद।

इस चित्र में एक खंडहर दिखाई दे रहा है और यहाँ खंडहर की जगह है।

इस चित्र मे आसमान दिखाई दे रहा है और एक अ बिल्डिंग दिखाई दे रही है और गेट खुला दिखाई दे रहा है और एक गेट लगा हुआ है।

और गेट के अंदर मे कुछ लोग आते जाते दिखाई दे रहे है पेड़ पौधे है और कुछ बिल्डिंग है धन्यवाद।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

और अ यह बिल्डिंग सफ़ेद कलर की है और अ खाली जगह दिखाई दे रही है और अंधेरा छाया हुआ है और ये शाम का समय है धन्यवाद।

चित्र मे स्टेज दिखाई दे रहा है स्टेज के ऊपर अ काफी अच्छे से सजावट की हुई है और रंगीन अ परदे लगे हुए है और एक कुर्सी रखी हुई है।